चित्र के अन्दर बहुत बड़ी नदी टाइप की बनी हुई है।

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं और आसपास बहुत से घर भी नज़र आ रहे हैं।

के अन्दर एक बहुत बड़ा सा फार्महाउस नज़र आ रहा।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म बना हुआ है जिसमें--

एक ही कलर की मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं।

रंग बिरंगियाँ साड़ियाँ भी रखी हुई हैं इसमें एक आदमी भी नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं जिनके आसपास बहुत बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

कुर्सियां भी रखी हुई हैं और बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत से घर बने हुए हैं।